और चर्च के पास एक ब्यक्ति खारा है बच्चे के साथ और एक फोरऊ व्हीलर खरी है व्हाइट की।

यहा एक कैफै है कैफै के पास अंदरी एक टेबल सी लागि है तबलेस के उपोर दो जग है एक ब्लू एक येलो और उसके पास एक बर्नी है बर्नी के पास एक बरकोड़े लगा है।

यहा एक घर है घर के पास कुछ घर बनने है उस घर के ऊपर कुछ आ टंकी राखी है एक काली कलर की टंकी --